जोकि काफी अच्छा दिख रहा है। उसके आसपास पाँच छः छोटे-छोटे पौधे भी हैं जहाँ पर वो काफी अच्छे --

यह एक फुलवारी जैसा आगे म- का मकान है और वहां पर एक ब- ब- बच्चे हैं ।

यह लाइटे वाइट कलर की है और वहाँ पे फेन भी लगे हुए हैं| जहाँ पर अच्छे ऐसे लग रहा की बिज़नेसमेन लोग यहाँ पे आते हों--